ये जगह जो है जहाँ पे चेयर लगाया हुआ है वहाँ पे लोग बैठेंगे और इस अ पेंटिंग को खरीदने के --

--शॉप है अ स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मिल--

यहाँ पे ए बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है कि जो भी ये ए स्ट्रक्चर है घर बनाने--

इसपे बहुत सारे लोग आए हैं जहाँ पे झूला भी पीछे दिख रहा है और बहुत सारा अ छोटा-छोटा दुकान है जिसपे सामान मिलेगा।

क्योंकि ये नेचर को डायरेक्टली हमारे से कनेक्ट करेगा यहाँ पे एकदम शांति होगा और यहाँ पे अ--

यहाँ पे दो भैंस है उसमें एक उसकी शायद माँ है और एक उसका छोटा सा बच्चा है और दोनों अ हम जैसा जानते हैं कि हमारे--